यह गिरजा घर का कुछ पार्टी उटी मना रहे है लोग और ये काफ़ी अच्छा मन रहा है गॉड और काफ़ी लोग गुब्बारा-उब्बारा लगाया गया है।

ये सिनेमा हॉल का थिएटर है।

महात्मा बुद्ध की मूर्ति है काफी अच्छी मूर्तियाँ हैं और इस मूर्ति का सब लोग पूजा करते हैं ये मंदिर भी है यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं और वो काफी बढ़िया से इनका पूजा करते हैं ।

मकान है ये मकान बहुत सुंदर है और लोहे का गेट लगा हुआ है और ये इस पर्पस से रेंटर के पर्पस से बनाया गया है जब मन करे तोड़ है और उसने एक चाबी दे रखी है ।

आये हैं | इनका स्वास्थ्य का कुछ इस तरह का इशू दिख रहा है जैसे लोग यहाँ यही पे समय दे रहे है और ये काफी अच्छी है ।

और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा जिसमे तीन चार प्रकार की चरखी है काफी ऊंची-ऊंची चरखियाँ हैं।